दीवारों पर वाइट कलर हो रखा है साइड में एक ब्लू कलर का बोर्ड है जिसपे बहुत सारे नोटिस लग रहे हैं और--